और कुछ लोग नीचे बैठे दिखाई दे रहे हैं।

दरगाह थोड़ी ऊंचाई पर बनी है जिसके लिए सीढ़िया भी है बनाई हुई।

और चारों बच्चियाँ स्कूल की हैं इन्होने स्कूल यूनिफार्म पहना है।

ये एक मस्जिद का चित्र है जहाँ पर लोग नमाज पड़ रहे हैं।

एक तरफ और पर्दा लगा हुआ है वहाँ भी कुछ कॉपी लगे हुए रखे हुए हैं।